यहाँ पर एक मकैनिक दुकान दिख रही है जहाँ पर गाड़ियों को सही किया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग काम करते दिख रहे हैं।

सामने रोड है जिसमे कई बाइकें खड़ी हैं एक आदमी भी खड़ा हुआ है ।

यह एक बैंक लग रहा है सामने एक कच्ची सड़क है किनारे पे एक नदी भी है।

यहाँ एक चिकन बतख दिखाई दे रही है। और तीन-चार और भी बतके हैं।

कई सारे घर बने हुए हैं यहाँ सफ़ेद रंग की है।